इस फोटो में चार चेयर दिखाई दे रही हैं जो येलो कलर की है एक टेबल दिखाई दे रहा है और पीछे एक ए_सी लगा है।

इस फोटो में एक किचन दिखाया गया है जिस पे अभी काम चल रहा है।

सफेद रंग की फर्श पे टाइलें लगी है।

ए_टी_एम और ए_टी_एम योनो एस_बी_आई का ए_टी_एम है।

अंदर एक ए_सी लगा हुआ है दो ए_सी लगे हैं सॉरी ।

फ्रॉक में एक पिंक कलर की फ्रॉक है एक ब्लू कलर की फ्रॉक है और एक प्रिंट कलर की फ्रॉक है जिसमें फ्लावर्स का प्रिंट दिया हुआ है।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

बाहर बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है बालाजी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ।

कोका कोला कोका कोला और सड़क पे काफी सारे लोग हैं रिक्शा भी नजर आ रही है तीन।--

इस फोटो में दीवार सफेद रंग की है। काफी सारे लोग खड़े हुए है।

बोर्ड पे लिखा हुवा हैं अपोलो डायग्नोस्टिक --

कुछ यहां पर वॉश बेसन कीप डिजाइन हैं।

बिल्डिंग पूरी ब्राउन कलर की नजर आ रही है।

और सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ घर हैं।

इस फोटो में दो टेबल नजर आ रहे हैं।

सामने एक स्टेज लगा हुआ है।

और यहां पर प्रवीन नाम लिखा है और एक नम्बर लिखा हुआ है।

तीन बच्चे और दिखाई दे रहे हैं।

पीछे जो है अह कुछ कप रहे हुए हैं और मेनू लगा हुआ है।

और ऊपर पिज़्ज़ा की और फ्रेंच फ्राइज की फोटो लगी है।

दीवार सफेद रंग की नजर आ रही है।

एक टेबल भी दिखाई हमे दे रही है।

एक लड़का दिख रहा है कुछ बाइक है और कुछ एक्टिवा नजर आ रही है।

एक छोटा बच्चा है जिसने लाल रंग के टी शर्ट पहनी है एक कार है जो की ब्लू कलर की है।

सामने घड़ी दिखाई दे रही है जिसमें समय भी दिख रहा है की एक बज गया है।

और दीवार जो है काले रंग की है पीछे पर्दे लगे है।